और उसमे अंदर बहोत सारा सामान भी है कुछ सामान टागं करके रखा हुआ है।

और कुछ सर्टिफिकेट कोइ फ्रेम करके लगाया हुआ है अंदर पूरा लाइट भी जल रहा है बोर्ड भी लगाया हुआ है।

बाहर एक दो जूता भी दिख रहा है।

उधर दूध का बड़ा बड़ा डब्बा भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर बड़ा पोस्टर भी लगा है इसमें लिखा हुआ अनमोल यहां पर बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं एक लड़की है जो कि पूरा परी वाले गेट अप में है।

और तीन लड़कियां है जो पूरा आर्मी वाला गेटअप में है और एक ने झंडा भी हाथ में पकड़ा हुआ है इन लोगों ने उधर सीढ़ी भी दिख रहा है।

अ मैट के नीचे ये काफी दरवाजा लगा हुआ है।

और इधर भी दरवाजा लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ है जांच घर।

और पूरा पटरा का बनाया हुआ है इधर बाहर में।

उधर भी काफी सारे भगवान जी के फोटो दिख रहे हैं जो की बहोत सुंदर तरीके से सजा के रखे हुए हैं।

उधर चेयर भी लगाया हुआ है।

और यहां पर नीचे रेड कारपेट बिछा हुआ है।

पूरा मच्छी बाजार का चित्र दिखाई दे रहा है।

उधर ये काफी सारे साइकल्स भी दिखाई दे रहे हैं।

एक कपड़े की दुकान के चित्र है।

इस चित्र में मुझे कपड़े का दुकान दिखाई दे रहा है यहां पर कपड़े कुछ कपड़े मोड़ के भी रखे हुए रेक ।

वहाँ सोफ बैठने वाला बेड भी दिखाई दे रहा है।

लड़कियों के और कुछ कपड़े हैंगर अभी टंगे हुए हैं कुछ कपड़े पुतले में ही पहनाए हुए हैं।

और अंदर बहुत सारा काम भी चल रहा है अंदर भी कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

बाहर बहुत सुंदरता से सजा के दिया लगाया हुआ है।

एक पूरा ए_सी भी लगाया हुआ है।

इधर पूरा बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड में कई तरह तरह के पेड़ हैं पौधे हैं और।

खम्भा में भी लाइट लगा हुआ है पूरा तार भी कनेक्सन है।

दुकान में अंदर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें कुछ पोस्टर चिपका के लगाए हुए फाइव परसेंट ऑफ़ ।

यहाँ पूरा बैलून भी लगा हुआ है।

इस चित्र में मुझे एक सड़क दिखाई दे रहा है सड़क के किनारे में ये बड़ी इमारत दिखाई दे रही है।

इस चित्र में मुझे ये बास से बनी हुई रंग बिरंगे कपड़े भी लगाए हुए पंडाल दिख रहा है।

इधर इस पंडाल में ये एक आदमी दिख रहा है।

चित्र में मुझे ये होल दिखाई दे रहा है।

लाइट भी लगा हुआ है।

यहां पे एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है बैठने के लिए सीट बनाया हुआ है।